हर एक काउंटर में बोहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं। यहां एक सुंदर सा सुंदर काउंटर भी बना हुआ है। जिसमें बोहोत सारे कपड़े रखे गए हैं। कुछ कपड़े डब्बे में भी रखे गए हैं।

यह एक आदमी है इस आदमी के हाथ में घड़ी है ये चश्मा पेहेन रखे है यहाँ एक औरत की फोटो लगी हुई है।

एक बहुत ही बड़ा केक है जो बहुत ही सुंदर दिख रहे है यहाँ मोमबत्ती लगाए गए हैं यहाँ एक चाकू भी रखा है।

हां बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं जो की बहुत ही बड़े-बड़े हैं यहां कुछ गमले भी दिखाई दे रहे हैं यहां कुछ गमले में पौधे भी लगाए गए हैं एक मच्छरदानी भी दिख रहा है।

बहुत सारे छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे है बहुत हरे-भरे घासे भी दिखाई दे रहे है जो बहुत ही सुंदर दिखा हो।

यहाँ बहोत सारे कुर्सियां रखी गयी हैं बहुत सारे लाइटें भी रखे गए हैं ।

बहुत से बड़े-बड़े लोहे है यहां सब आदमी ने कैप पहन रखी है नीचे एक सुंदर सा रोड भी है बहुत ही बड़े पुल है बहुत ही मेहनती से बनाया गया।

यहाँ हर काउंटर में किताबें भरी हुई है यहाँ बहुत सुंदर-सुंदर किताब रखी गई हैं कुछ बच्चे कुर्सी में बैठे हुए हैं बहुत सारे किताबें --

बोहोत ही सुंदर जगह है। यहाँ बोहोत ही हरे-भरे पत्ते दिख रहे है। बोहोत सारे झाड़ियां है। बोहोत बड़े-बड़े पेड़ भी है।